कि दिवार एक नई कड़ी हो रही है और तीन पिलर देख रहे है और इस घर के सामने जस्ट एक हरे कलर का घर है।

ये एक मार्ट का फोटो है जो ये एक मॉल का फोटो है जहाँ किराने के घर का सामान मिलता है और राशन वगेरा भी।

ये किसी एक किराने या के बाहर का फोटो लिया है जहाँ कुछ कस्टमर बाहर खड़े हुए हैं।

ऊँ ब्लैक मशीन से मसाज हो रही है बैक की और एक --